घर का बाहर एक सोफा भी है।

दुकान का ऊपर पोस्टर लगाया हुआ है।

उसके पास में दो तीन पेड भी है।

जर्सी लोग भी है शूज़ और कपड़ा लोग भी है।

मुझे यह एक बस्ती के छोटा सा पाठ दिखाई दे रहा है।

कोई कोई दुकान बंद है और कोई खोला हुआ है।

मुझे यहाँ एक क्रिश्चियन चर्च दिखाई दे रहा है।

यहां में टीना घर भी है और कच्चा घर भी है।

पूरा वॉल जो वाइट कलर में है एक छोटा सा ग्लास में घास भी थोड़ा सा है।

मुझे इस तस्वीर में एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

अंदर मे चार टेबल्स और टिश्यू पेपर्स दिखाई दे रहा है।

वो लोग सब ऑरेंज कालर कपड़े पहने हुए हैं।

मुझे यहां एक लियोपॉर्ड दिखाई दे रहा है।

उसका आगे एक बड़ा सा काला लोहा भी है।

इस तस्वीर में बहुत ज्यादा पेड़ भी दिखाई मिल रहा है।

वो एक बार एक अंदर में घुसा के दिखाई दे रहा है।

रेलवे स्टेशन बहुत खाली खाली है।

सामने में एक पिलर दिखाई दे रहा है उसका कलर ब्राउन है।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

बच्चे के लिए छोटे वाले बाइक्स और बहोत ज्यादा सामान रखा हुआ है।

और वो लोग के पीछे में बहोत एक लंबा सा स्कूल भी है।